और आसमान नजर आ रहा है जिसका रंग --

गाड़ी का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

पानी का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है।

हरे - हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

पेड़ नजर आ रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहे है।

मैदान नजर आ रहा है मैदान मे नीचे --

मान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

लोग खेलते हुए नज़र आ रहे है दूर जाकर सामने एक--

बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

यहाँ चार तकिये नजर आ रहे है।